सड़क पर यैलो कलर की बहोत बड़ी बस खड़ी हुई हैं और एक गाड़ी खड़ी हुई हैं मारुति गाड़ी खड़ी हुई हैं और एक टीबा खड़ी हुई हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं सड़क पे एक पीले कलर की बस खड़ी हुई हैं ।

यहाँ पे अ ऑरेंज कलर का और यैलो कलर और पिंक कलर का आसमान नज़र आ रहा है और यहाँ पे --

जिसमे झंडे में ऑरेंज कलर ग्रीन कलर व्हाइट कलर के कलर हैं और यह ग्राउंड में हरी-हरी घास नज़र आ रही हैं व्हाइट कलर के झंडे भी नज़र आ रहे हैं बहोत बड़े ट्री नज़र आ रहे हैं।

ब्लू कलर की शर्ट ओर ब्लैक कलर के पेंट पहने हुए है और व्हाइट कलर के सीढ़ियों पे वो बैठे हुए है ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे है तार दिख रहे है आसमान नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर का हैं।

यहाँ पे एक काँच हैं काँच ग्रीन कलर क काँच में कांच के फ्रेम में दरवाजा लगा हुआ हैं और यहाँ एक कुड चेयर पे एक अंकल बैठे हुए हैं और एक अंकल खड़े हुए हैं और--

ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा ग्राउंड है उनमें एक अंकल दो तीन चार अंकल खड़े हैं एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहने हुए उनके हाथ में एक बैग हैं ।

और बहुत बड़ा गराउन्ड है गराउन्ड में ह घास भी नजर आ रही है और एक अंकल बैठे हुए है जो गिरिन कलर की शर्ट भी पेहने हुए है और यहाँ से बहुत वो व्हाइट कलर की लाइटे नज़र आ रही है आसमान बिलेक कलर का नज़र आ रहा --

बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे है हरी-हरी घास भी नज़र आ रही है और यहाँ से एक घर भी दिख रहा है और व्हाइट कलर की --

यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग ऑरेंज कलर वाइट कलर ब्लैक कलर ही पुती हुई है यहाँ से ग्रीन कलर के पेड़ भी दिख रहे है और आसमान भी नज़र रहा है।

जो ऑरेंज कलर और येलो कलर के झंडे लगे हुए हैं व्हाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही हैं और ब्लैक कलर की हॉट बनी हुई हैं और ट्री दिख रहा हैं आसमान दिख रहा हैं जो पर्पल कलर --

भी दिख रहा है और पर्पल कलर ग्रीन कलर का आसमान नजर आ रहा है और जमीन पर हरी घास भी दिख रही है एक अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ से ट्री भी--